फूलों से उसकी सजावट की गई हैऔर यहाँ पर बोहोत सारा कमरा भी मंदिर भी सजाया गया हैऔर बोहोत ही अच्छी तरह से साड़ी दिखाई दे रही है साड़ी टंगी हुई है ।

यहाँ पर एक बहोत ही अच्छी भगवान की मूर्ति रखी हुई दिखाई दे रही है जहाँ--

भभूति यानि भुत से बनी हुई है और बहुत सा बहुत ही अच्छे उनके बहुत सारे हाथ दिखाई दे रहे है और वहाँ बहुत ही सुंदर सा सफाई और दूसरी एक मूर्ति दिखाई दे रही है जो बहुत सुंदर लग रही है।

यहाँ पर कुछ अ पानी का घड़ा दिखाई दे रहा है और वहाँ पर एक मूर्ति दिखाई दे रही है और बहोत सुंदर दिखाई दे रही है यहाँ पर कांच में रखी हुई है वोह बहोत ही सुन्दर है।

और यहाँ पर एक कैमरा मैन खड़ा हुआ है जहाँ पर बहुत सारी फोटो भी खींची जा रही हैं बहुत ही अच्छे से यहाँ सब फोटो खींच रही हैं बहुत ही अच्छा लगा रहा है यहाँ पर --